उस गार्डन के अंदर पेड़ पौधे भी आ रहे हैं।

यहां पर हमें एक रेगिस्तान दिखाई दे रहा है और उस रेगिस्तान में ऊंट भी दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर हमें एक रेगिस्तान दिखाई दे रहा हैं और कुछ ऊंट भी दिखाई दे रहे हैं।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

एक रेगिस्तान दिखाई दे रहा है और कुछ ऊंट भी दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां पर एक नर्सरी नजर आ रही है और कुछ फूल भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक सब्जी की दुकान दिख रही है और कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

सूर्य दिखाई दे रहा हैं और कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

एक झरना दिखाई दे रहा है और कुछ व्यक्ति भी दिखाई --

जिम की मशीने भी नजर आ रही है और कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे है।

ये दृश्य का हॉस्पिटल का नज़र आ रहा है इस दृश्य मे कुछ गाड़ियां भी नज़र आ रही है।